यह हम देख रहे हैं दृश्य ये आपको पेट्रोल पंप के सामने का उनका जो कार्यालय होता है उसका दृश्य दरवाजे लगे हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

हरी-हरी मखमली घासे बिछी हुई है एकदम उचें-उचें कुछ पेड़ हैं कुछ मकान के दृश्य है यह मकान के पास का उद्यान हैं।

यह देखा है कार्यालय कक्ष के बाहर का वेटिंग एरिया है सबके अपने अपने केबिन बने है कार्यालय के।

यह देख लीजिए उद्यान में जो बैठने की व्यवस्था होती है जो पत्थर वाली कुर्सी लगी रहती है जहां पे कोई जो--

यहा विवहा केस में जो लोग लोग भगभा वादित की ये जो बुलाये जाते है जो की गाना वगेरा बजाते है।

यह देखिए एक रेस्टोरेंट मुख्य द्वार है यहां पे मुख्य द्वार से हम लोग रेस्तरां में जाते हैं।

ये सब दिखाई दे रहे हैं हम लोग पहाड़ी एरिया में भी देखते आये हैं जो घूमने की जगह होता है और सुबह ऐसा ही नजारा--

होटल के कमरे जनरली इस तरह के ही होते हैं जहां पे डबल बेड सिंगल बेड की व्यवस्था रहती हैं होटल के कमरे--

पैदल चलने के लिए सीमेंटेड रोड बनाई गई हुई है दोनों साइड से वृक्ष नजर आ रहे है ऐसा जेनरली पार्क में आपको दिखाई दे देता--

टेबल कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने जो आर्डर किया है भोजन वो भोजन के इंतजार में वो बैठे हैं ताकी भोजन आए तो वो अपने भोजन--

अ बहोत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना सजावट किया हुआ है जेसा दीपावली अग हम हम लोग करते है उस तरह से इमे सजावट करा--

दोनों तरफ से लोहे के दरवाजे लगे हुए है अच्छा दरवाजा है और अच्छा मूक मुख्य द्वार भी बनाया--

यह एक उद्यान का दृश्य है। जहां पे पेड़ पौधे बिक्री के लिए रखे जाते हैं। आप देख रहे हैं ऐसा उद्यान है जो की--

ऐसा आपको हर जगह देखने को मिल जाता है ऐसे छोटे छोटे उद्यान--